और ग्रीन कलर यहां दीवारों पर--

इसमें माता की मूर्ति है गणेश भगवान की मूर्ति दिख रही है।

सामने की और टेलीफोन दिखाई दे रहा है।

दीवारों में पोस्ट लगे हुए दिखाई दे रहें और--

यहां पर एक व्यक्ति दिख रहा है।

साथ में कुछ चम्मचे दिख रहे हैं।

यहां पर हमें दिख रहा है पेड़।

यहां पर हमें कुछ गड्ढे दिख दे रहे हैं पीछे की ओर हमें दिखाई दे रहा है।

और मूर्ति दिखाई दे रही है।

यहां पर पेड़ों का कलर ग्रीन है।

यहां पर हमे दिखाई दे रहे है।

कारपेट येलो और थोड़ा रेड कलर का है।

सामने बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है।

मटर के दाने दिख रहे हैं।

येलो कलर की फूल दिखाई दे रही है।

कुछ चेयर्स दिखाई दे रही है।

और एक फिल्टर लगा हुआ है पानी के लिए।

बहोत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है।

दिख रहा है मूर्ति के रूप में।

सामने की ओर बिल्डिंग्स बनी हुई है।